ये घर है इसके आगे है और --

अच्छा लग रहा है बोहोत सारे बच्चा है। बच्चें भी सुंदर-सुंदर हैं। आदमी भी अच्छे-अच्छे हैं और --

यहाँ पर एक बड़ा कार भी है उस कार में बहुत सुंदर-सुंदर फूलों से सजाया हुआ है गुलाब का फुल भी है गेंदा का फूल भी है बहुत सुंदर भी है।

उस मकान के बाहर गाड़ी खड़ी है चेयर खड़ा है टेबुल खड़ा है।